कुछ ऐसे ही टंगी हुई है जिनमें नीली पीली हरी कत्थई और हरी अ कलर की साड़ियां है| इनमें गो-गोल्डन कलर का डिज़ाइन दी गई है नीचे सफेद कलर का कपड़ा बिछा हुआ है--

कुछ सब्जी की दुकाने है जो की छाते की नीचे लगायी गयी है। एक पीले कलर की बेन जा रही है जिसे एक ड्राईवर चला रहा है। कुछ नीचे कुछ बोतले लगी--

नीचे मिट्टी मिलने के कारण पानी का रंग बदल चुका है बहुत बड़ी-बड़ी चट्टानें है जिनपर काई आ चुकी है इसका मतलब चट्टानें परानी है पेड़ लगे हुए है छोटे-छोटे